आदमी बैठा हुआ हे और लगता हे कुछ खेल भी रहा हे और लगता हे शाम का समय हे और बहुत अच्छा नजारा भी हे।